यहाँ पे छोटे छोटे पोधे भी लगाये गए हैं जो कि बहोत ही अच्छे दिख रहे हैं। .

यह एक फल का दूकान है य दूकान बहुत ही बड़ा है यहाँ पे बहुत प्रकार के फल मिल रहे हैं ।

यह एक स्विमिंग पूल है यह स्विमिंग पूल बहुत ही खुबसुरत दिख रहा है इस पूल में लोग नहाने के लिए आते है।

यह कोई कोलोनी जैसा दिख रहा है यह कोलोनी बहुत ही बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए है।

यहाँ कोलोनी के बाहर में एक बड़ा सा पेड़ भी है और इसके साइड में दो रास्ते भी है एक आते और एक जाते हुए--

यह एक कपड़े का शॉप है यहाँ पे कुछ वस्तुए बेची जाती है यहाँ पे कपड़े एवं वस्तुए बिकती है।

इस रूम का बैड भी बहुत ही बड़ा है और इसे बहुत ही अच्छे कपड़ों से बनाया गया है।

यह कोई मैरिज हॉल है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सजाई गई हैं।